आ उसके ऊपर यानी फूल सा गेट पे लगा हुआ है।

एक शॉप दिख रहा है जिसका नाम है द मेंस ब्रांड --

बा का द ब्रांडेड शॉप लिखा हुआ है उस शॉप के --

जो व्यक्ति लोग बेडशीट पर बैठे हुए हैं।

उसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है पिलर --

यहाँ जो ये चाँदनी चौक मुजजफफपुर लिखा हुआ दिख रहा है ।

इसमें रंगों-बिरंगों का बल्ब लगा हुआ दिख रहा है ।